और काफ़ी लोग हैं और काफ़ी भीड़ भी है और सब अपने-अपने काम में लगे हुए हैं।

तो आइए देखते है ये बच्चे है जो अपना-अपना मेहनत कर रहे है अपने-अपने कला को दिखा रहे है पेपर से कुछ-कुछ बना रहे है।

और काफी सुन्दर लग रहे है देखने में साथ में बैठे हुए है और एक दूसरे को देख भी रहे है और पीछे तरफ अच्छा सा सीन भी है और पेड़ भी बहुत अच्छा-अच्छा है बड़ा-बड़ा है।

और थोड़ा पुराना भी है और सीन भी बहुत अच्छा है सीढ़ी बनाया गया है पेड़ है और देखने का बहुत अच्छा सीन बन रहा है।

और आप देख सकते हैं बहोत बड़ा फील्ड है बहोत बड़ा ग्राउंड है और यहाँ पे पेड़-पौधा है बहोत बड़ा-बड़ा और सीन भी बहोत अच्छा-अच्छा बन रहा है और काफी सुंदर लग रहा देखने में और काफी अच्छा लग रहा है घूमिए आइए।

काफी खूबसूरत लग रहा है देखने में पर ये शिक्षा का ही काम है आप सीखना चाहिए ये सब काम भी और आप देख सकते है इसमें लाइट का भी सुविधा है बैठने का भी सुविधा है ।

लोग पहुंच गये हैं इस पुराने से मंदिर में और आप देख सकते है काफी पुराना मंदिर है जो की बहुत अच्छा से डिज़ाइन करके बनाया गया है काफी सुन्दर लग रहा है देखने में और काफी पुराना भी हो गया है टूट-फूट भी गया है।

लेकिन सीन बहुत अच्छा है और इस टाइप का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में और काफ़ी पुराना भी है काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में ।

और आप देख सकते है बुक रीड करना चाहिए और अपने बच्चों को भी रीड करवाइए खुद रीड कीजिए और आप देख सकते है काफ़ी बड़ा दुकान है काफ़ी बुक्स रखे हुए हैं काफ़ी कॉपी रखे हुए हैं।

और यहाँ पे आप देख सकते है काफ़ी सारा पेड़ है पौधा है और यहाँ पे आप फोटो शूट कर सकते है शूटिंग कर सकते है घूम सकते है सुबह को आप वॉक पे आ सकते है और टहल सकते है काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में।